सामने टेबल रखी हुई है टेबल पे कुछ पेज रखे हैं पेज में कुछ लिखा हुआ है।

कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं सामने की ओर बहुत सारी सजावटें हैं।

सामने ए_टी_एम है ए_टी_एम के अंदर बहुत सारी लाइट जल रही है बहुत सारे व्यक्ति है।

बाहर की ओर बहुत सारे कागज पड़े हुए हैं।

दो व्यक्ति हैं जो पोल खेल रहें ऊपर की ओर लाइट जल रहीं हैं।

सामने बहोत सारी मूर्तियां बनी हैं जिनमें से कुछ पुरुष हैं जो सफेद कलर की पो पोशाक पहने हैं।

प्लास्टिक का टंकी रखा हुआ है छत के ऊपर आसपास पेड़ हैं।

ऊपर की ओर लाइट जल रही है सामने--

यह एक स्थल है जहां पे महिला और पुरुष एकत्रित हैं जहां पे बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।

बहुत सारी अलमारियां हैं आसपास कुछ घर बने हैं।

एक स्टेज बना हुआ है स्टेज के सामने टेबल रखा है।

अंदर की ओर कांच लगा है कुछ व्यक्ति बैठे हैं।

सामने एक कार रखी है जो बच्चों की खेलने की है दो सीढ़ियां हैं।

सामने एक डॉक्टर बैठा हुआ है डॉक्टर के सामने एक महिला बैठी है जो अपने बच्चे को ले गई है।

व्यक्ति नाक पे मास्क लगाए हुए हैंआसपास घर बने हैं।

कुछ दुकानों में बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं जो सामान ले रहे हैं कुछ व्यक्ति रोड पास आ रहे हैं और जा रहे हैं।

टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान रखा है। फ्रिज में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है।

सामने से रेल की पटरी है वहां पर बहुत सारी घिट्टी डली हुई है।

लकड़ी का सामान है प्लास्टिक का समान है कुछ कपड़े भी हैं चारों ओर बहोत सारी लाइट जल रही है बहोत सारे व्यक्ति हैं जिनमें कुछ महिला और कुछ पुरुष भी शामिल हैं।